मुझे तीन फ्लैट दिख रहे हैं और गेट के ऊपर वो रोशनदान भी है।

और उसके पास हैं कूलर करने के लिए दरी भी दिख रही हैं टाइल भी दिख रही हैं।

मुझे एक बार साफ दिख रहा है जिसके अंदर टे एक ट्रेलर खड़ा है और एक एम्बुलेंस है और एक बैटरी भी है पास में।

और एन सीढ़िया भी दिख रही है और सीढ़ियो पे बना रेलिंग भी दिख रही है।

लोटा और कैंपर रखा हुआ है और एक मेज दिख रही है कुर्सी दिख रही है और इसमें बैग बहुत सारे बैग भी भरे हुए हैं।

मुझे इस मैदान के अंदर बहुत सारी बसें दिख रही है जो वो लगभग रोडवेज बस है और उसके उसमें --

हां एक कार भी है और इसमें एक व्यक्ति कमर पर हाथ धरे हुए बै खड़ा है और इधर --

ये मुझे एक हॉस्पिटल की तरह दिख रहा है जो हॉस्पिटल ही है और इसमें व्हील चेयर है और बैठने के लिए --

मुझे बिल्डिंग दिख रही है जिसमें गंगा इंस्टा और अंदर--

और एक ये छोटा सा घर और बना हुआ है ये भी दिख रहा है और नीम का पेड़ है नीम का पेड़ भी दिख रहा है।

घास है और ये पेड़ भी है।

मुझे एक रोड दिख रही है और वहां से--

इधर भी सब्जी बेच रही है और एक पास मे किरन परचून की दुकान है और एक व्यक्ति पीछे साइकिल लिए खड़ा है।

मुझे डायग्राम दिख रहा है जिसमें--